शीशे के अंदर पिंक कलर का इंक व्हाइट कलर का इंक और ब्लू कलर का इंक भी रखा हुआ है।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक बड़ा सा मसीन मशीन लगा हुआ है।

पंखा भी है और बोर्ड भी है।

यहां पे दिखा रहा है कि एक बड़ा सा कमरा है।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक दुकान है जिस दुकान के अंदर एक बेसिंग बेसिन रखे गये हैं।

और पीछे पेंट रखे गए हैं पेंट के साइड में एक ड्रिलिंग मशीन भी रखा गया है।

पंखा लगा हुआ है और एयर फिल्टर भी लगाया हुआ है।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक कमरा है जिस कमरे के अंदर एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ है।

इस स्टेडियम में बहुत सारे लोग हैं और यहां पर नीचे स्टेडियम के बहुत पेपर बिछाया गया है।

कुछ लोग यहां पे काम कर रहे हैं।

इस फोटो में दिख रहा है की एक रेस्टोरेंट है जिस रेस्टोरेंट के अंदर बहोत अच्छे अच्छे डेकोरेशन किए गए हैं जैसे कि यहां पे टेबल ऊपर व्हाइट कलर का कवर चढ़ाया गया है।

इस फोटो में दिख रहा है कि यहां पे एक बेसिंग लगाया गया है बेसिंग के आगे एक कुर्सी है जिसके ऊपर एक वाइट कलर का कवर चढ़ाया गया है।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक बड़ा सा डैम जैसा नदी है।

पास में एक पेट्रोल पंप दो पेट्रोल पंप है और कार भी लगा हुआ है।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक दुकान है जिस दुकान के अंदर बहुत सारे कूलर रखे गए हैं।

यहां पे मार्बल्स बिछाए गए हैं और सीढ़ियां बनाई गई हैं।

ऊपर ड्राई फ्रूट्स जैसा कुछ रखा गया है और नीचे डब्बे में भी ड्राई फ्रूट्स हैं।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक बड़ा सा टेबल है जिस टेबल का रंग ग्रीन है और इसके ऊपर व्हाइट कलर के डिजाइन में बहुत सारे फूल जैसा डिजाइन बनाया गया है।

यहां पे बहोत सारे गैस सिलेंडर हैं।

यहां पे ए_सी भी लगाया गया है और बहौत सारे लाइट भी।